यह एक बहोत बड़ा बाँद जेसा दिखाई दे रहा है इसमे आठ दस ठो --

कर रहे है हरे-भरे एक दम चारों तरफ पेड़-पोधा है ये बच्चे लोग छत-छत छत्ता पकड़ के खड़े है स्टूडेंट लोग और देखिए ये लोग फाओड़ा पकड़े हुए है।